जगह है यहाँ सुबह शाम आ--

ये पुराना है रेली महल है राजा--

यह आदमियों का फिट्नेस के लिए दौड़ने के लिए बनाया गया--

ए ह छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक है जो बलरामपुर मे--

बनाया गया है यहाँ पर पैसा ऐसा का लेन देन होता है।